ये एक होटल का चित्र है जिसमें पीला दीवाल है।

बना हुआ है दोनों हाथ पे एक औरत पर एक आदमी भारत को साफ कर रहा है स्वच्छता अभियान को दिखा रहा है।

जो बंगाली में लिखा गया है ठीक है उसके पीछे पेड़ पौधा है जो पिंक पिंक कलर में है अंदर दो गो पुलिस है।

वोक वर्क्स लिखा हुआ है उसके नीचे बहोत सारा बाइक लगा हुआ है आदमी खड़ा है इधर पोल है।